केची बनी हुई है नीचे कांच के बड़े-बड़े दरवाजे लगे दिखाई दे रहे हैं।

उसके सामने दो चार लड़के दिखाई दे रहे हैं गुफा के ऊपर हरे रंग के पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

काले रंग की पट्टी में सफेद रंग से कुछ इंग्लिश में लिखा दिखाई दे रहा है।